छत पर एक फैन टंगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।

सामने तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रहा है जिसपर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने तस्वीर पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

कुछ साइकिल दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।

दोनों और मोबाइलों की दुकान है।

सामने तस्वीर में एक बैंक दिखाई दे रहा है।

सामने फर्श भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।

सामने तस्वीर पर बहुत सारे लकड़ी कटे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने तस्वीर पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

एक सफेद रंग का छत दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है।

चार व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

ठेले के पीछे एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे बाइक दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला लाल पीला दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर पर एक दीवाल दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

लाल रंग का बॉक्स दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में एक दुकान दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है।

ठीक बगल में लाल रंग का एक ट्रे दिखाई दे रहा है।

जिसका रंग काला सफेद दिखाई दे रहे है।

सामने तस्वीर में एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद हरा दिखाई दे रहा है।